तस्वीर में हमें जो दिख रहा है किसी एक जगह पर--

इसमें हम देख रहे हैं कई सारे लोग हैंऔर वो जो--

और उस बातचीत कर रहे हैं आपस में और पंडाल लगा हुआ हैडेकोरेशन है।

इसमें और सब लोग योगासन कर रहे हैं।

अं जो पूजा अर्चना की जाती हैं वो हो रहा है सामान दिया जा रहा हैं उसके बाद सब लोग खड़ा हुए हैं स्टेज पर।

अअ कुर्सियां लगी हुई हैऔर आसपास का देखकर--

पीछे के या आगे का जो भी हिस्सा है वो थोड़ा बन रहा उसमें काम चल रहा--

बड़ा सा लेटर बॉक्स रखा हुआ है ये रेड कलर का होता है।

उस बिल्डिंग पर फर्स्ट चॉइस शॉपिंग मॉल लिखा हुआ है।

अह मशीन चालू है और कुछ प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं कुछ बनाया जा रहा है।

तो ये लोग उसमें एक भाई साहब उसमें डाल रहे हैं कुछ मशीन के अंदर--

और ये तस्वीर ऐसी लग रही है जैसे कि--

इस तस्वीर में हमें एक एक दो लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सियां डली हुहैं।

प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कोई एक जगह है जहां पर--

और उसमें बोर्ड भी लगा हुआ है देखिए आप लोग और--

इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है अंदर--

वहां का ये दिखाई दे रहा है हमे तस्वीर है।

हमें नजर आ रहा हैये बस स्टैंड है क्योंकि बस स्टैंड पर ही बहुत सारी जो--

एक रिसोर्ट है जिसका नाम है मेहर और काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

रिसोर्ट है अह यहां पर लोग रुकने के लिए आते हैं।

और केबल वायर और ऐसी जो चीजें होती हैंऑयल वगैरह केए रखी हुई है बॉटल्स --

ये भाई तीन जो भाई सब है ये बैठे हुए ।

अंदर ये एक बाइक खड़ी हुई है इनकी और पेड़ लगा है बड़ा सा ये वहां का दृश्य है।

इस तस्वीर में हमें एक घर नजर आ रहा है।

और उस अ घर की जो दीवार है उस पर--

एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं जो विज्ञापन होते हैं वो लगे हुए हैं उस पे मधु गारमेंट होलसेल स्टोर का --

इसमें हमें दिख रहा हैगार्डन एरिया जो नर्सरी कहा जाता है जिसे जहां पर हम पेड़ पौधे लेने --

हम देख रहे हैं मुगलाई फूड्स फैमिली रेस्टोरेंट का--

एक बड़ी सी इमारत है और इसके बाहर--

अह थोड़ा थोड़ी हरी हरा भरा है थोड़ा ज्यादा नहीं है।

किसी एक जगह का ये एरिया है बेसमेंट एरिया वहां पर ये खड़ी हुई है।

एक जगह जहाँ पर अ तालाब का किनारा है ये पानी--

इस जगह पर कुछ कोई चीज जो है वो डली हुई है कोई अनाज है या जो भी है और बहोत सारी--

इस दृश्य में साफ हमें दिखाई दे रहा है कि मेन डोर है।

किसी एक फंक्शन की का ये चल रहा हैकोई फंक्शन वहां का ये दृश्य है।

अ थोड़ी दूर पर भी है पास भी ये कार खड़ी हुई।

इस तस्वीर में वेलकम लिखा हुआ है कार्यालय जिला खेल कार्यक्रम अधिकारी--

और ये इस जगह का बाहर कायबाहर की तस्वीर है।

उनमें तीन चार भाई साहब खड़े हुए हैं वो बैठने के लिए इंतजार कर रहे हैं।